बोहोत ज्यादा लाइट भी लगा हुआ है इस गार्डन के अंदर ये रात का पिक्‍चर है ।

इस पिक्‍चर को देख के लग रहा है ये एक सैलून है ।

डिजिटल लाईफ का जियो का एक सेंटर छोटा सा सेंटर --

बिल्डिंग देख के तो लग रहा है के बोहत दिन का पुराना भी है ।

दूर में एक बड़ा सा एक पानी का टैंक दिखाई दे रहा है।

बोहत सारा गाड़ी भी आई हुई है पेट्रोल भरवाने के लिए |

ये हॉस्पिटल का जो नीचे वाला फ्लोर है वो अभी भी बंद है दिखाई दे रहा है।

हाॅॅस्पिटल के सामने एक आदमी और एक औरत खड़ी भी हुई है।

शॉपिंग मॉल के सामने बहुत सारा बाइक खड़ी भी हुई है | एक सिक्‍योरिटी गार्ड भी है जो बैग चैक कर रही है ।

यहाँ पे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ।

दो तीन मोटरसाईकिल भी दिखाई दे रहा हैं।

दांए तरफ बोहत सारे लोग आदमी खड़ा हुआ है ।

रस्‍ता दिखाई दे रहा है ।

एक शॉप दिखाई दे रहा है। एक जूते की शॉप --

सफेद कलर का एक बिल्डिंग है बिल्डिंग बहुत ही बड़ा --

ये जो जगह है इसके सामने एक बाइक दिख रहा है। एक चेयर टेबिल लगा भी हुआ है। ऊपर पैनल जैसा बनाया गया हैं।

प्‍लास्टिक से कवर अप किया हुआ है ।

ये एक पार्क है। जहां पे दो जिराफ दिख रहा है।